ये बगीचा है बगीचा में गाछ है गाछ में बढ़िया-बढ़िया उल उल का भी गाछ है बॉडर रखा हुआ है बॉर्डर के साथ यह मोटरगार्ड है बबुर का गाछ लगाता है ।

कॉपी किताब कलम सब सजा हुआ है देखिए आप लोग --

ये सिर्फ कालीदुर्गा मंदिर है। मंदिर में एक गेट लगा हुआ है। दुर्गा जी जाते हैं उस भीतर में निकल। शिव पार्वती ओजी का मंदिर है औ देखिये गाछ कितना बढ़िया-बढ़िया है। लोग जाता बजरंगबली का मंदिर न है इसमें ?